एक बड़ा पेड़ जिसके नीचे एक आटो खड़ा हुआ है आटो के पास एक महिला है जो सफ़ेद की साड़ी पहनी है। बैठ रही है पीछे मे एक महिला खड़ी है।

एक झील जिसके बीच एक चबूतरा बना हुआ है चबूतरा के पास तीन बोट रखे हुए है झील के पार बीच मे एक बड़ा पेड़ है।